पने मे पंडाल दिख रही है और वो पंडाल के अंदर मे दुर्गी मा का मूर्ति दिख रही है।

एक रेस्टोरेंट है जहां पर ढेर सारा इंसान बैठे हुए है कुछ औरत है कुछ मर्द है।

सामने मे ए दूध का डंबल दिख रहा है दूध का चोंग भी दिख रहा है दूध का चोंग का एक इंसान दरवाजे के पीछे खड़े हुए है।

यहां एक पेड़ का मार्केट है जहाँ पर सब लोग पेड़ बेच रहे है कुछ लोग बैठे हुए है अगल-बगल और कुछ लोग इंसान खड़े हुए है।

एक इंसान खाना लेने के लिए आए हुए हैं एक इंसान और पीछे से आ रहे है ए दीवार मे एक गैस फेन लगी हुई है ऊपर मे दो पंखे भी लगी हुई है।

के अगल बगल ढेर सारा यल्लो कलर का ऑटो रखा हुआ है।

एक नदी दिख रहा है नदी मे एक डेंगी चल रही है डेंगी के पीछे मे एक इंसान डेंगी चला रहा है सामने मे एक इंसान बैठा हुआ है।

और बुक खरीदने के लिए ढेर सारे इंसान आ रहे कुछ लड़के वहाँ बेठे हुए है कुछ लोग खड़े हुए है दुकान के बाहर चप्पल रखी हुई है।

अ डॉक्टर के पीछ में ढेर सारा पोस्टर है जिसमें पोलियो का पोस्टर है।

ये एक रूम टाइप का घर दिख रहा है इसमें एक लडक खड़ा हुआ है जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है वो मोबाईल से अपना सेल्फ़ी ले रहा है।

ये एक शादी का पंडाल दिख रहा है सामने मे बड़े सा गेट दिख रही है जो सुंदर सा डेकरैशन किया हुआ है।